और ये दोनों बोहोत सुन्दर है यहा पे पीले रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है ।

और यहा पे बोहोत सारे ए_सी भी लगे हुए है ।

लाइट में जो जो हमारे एक पंखा भी चल रहा हैं जो की वाइट कलर का हे यहा पे ब्लैक रंग का एक टेबल भी हे एक कुर्सी भी हैं।

और यहाँ पे बहुत सारे फूल भी लगे हुए है जो रंग बी रंगे फूल लगे हुए है यहाँ पे--

और यहां पे एक पीला गेट भी है और यहां पे एक इंसान खड़ा है।

ऑरेंज इसमें रेड कलर का फूल यहाँ बोहोत सारे छोटे छोटे मिटटी के गमले बने हुए है।

और यहा पे एक मोटा सा पेड़ भी है जिसकी पत्तिया हरा है ।

यहा पे एक बोहोत सारी कुरसिया भी लगी हुई है ब्लैक कलर की --

यहा पे एक पानी का जग भी रखा हुआ है ।

यहा पे लाल कारपेट बिछाया हुआ है और एक सोफा रखा हुआ ।

लाइट भी जल रहा है बोहोत बड़ा जो सफ़ेद रंग का है ।

एक है और यहा पे एक बोहोत सारी गाड़िया --

यहा पे एक ड्रॉवर भी है जो सफ़ेद रंग का है और एक जो शीशा उसनमें --

ये एक रेस्टोरेंट है यहा पे बोहोत सारी लाइट्स जल रही है यहा पे बोहोत सारी टेबलस है और चेयर है।

यहा पे एक इंसान है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है ।

ये एक केरेमल कॉर्वेन्ट स्कूल है और यहाँ पर बोहोत सारे फ्लावर्स लगे हुए है।

यहां पे एक पेड़ भी लगा हुआ है जिसके पत्तियां का रंग हरा है और यहां पे एक बहोत बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है जो वाइट और रेड कलर --

ये एक बेकरी है और यहा पे बोहोत सारे --

यहा पे मेलरेट भी बोहोत सारे लगे हुए है यहा बोहोत सारे --

यहा पे टेबल पे एक कप और टिश्यू पेपर --

ये एक जगह है यहा पे बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है और छोटे छोटे घास लगे हुए है उसे भी --

वाइट कलर का कुछ बड़ा सा घर में बना हुआ है उसका --

ऐ एक इन्सान काहे जो दुकान में और उसने ब्लैक कलर की --

ये एक केफे है डाउनटाउन केफे यहाँ पर एक गमला है जो --

ग्रीन कलर का पेड़ लगा हुआ है और यहा पे एक इन्सान है जिसमे पिंक कलर की --

हां जो उपर से परदे गिरे हुए है वो ऑरेंज रेड पिंक के कलर के है ।

यहा पे बोहोत सारे घास भी है जो हरे हरे रंग के है ।

यहा एक पेट्रोल पंप है और यहा --

और ये एक है ।

अ यहा पे एक खुला आसमान है और कुछ पेड़ पोधे भी लगे हुए है ।

यहा पे एक इंसान है जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है ।

ये एक घर है और इस घर के पास बोहोत सारे हरे हरे पेड़ पोधे लगे हुए है ।

इस घर में बोहोत सारी खिडकिया लगी हुई है और पीछे जो घर है उसका भी --

ये एक बोहोत ही सुन्दर सा डेकोरेशन किया गया ।

और यहा पे पानी एक पाइप लगा हुआ है जिसमे से पानी आ रहा है ।

आज इंसान है जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई है ।

और यहा जो टेल्स है वो ब्राउन कलर का है और बोहोत चमक रहा है ।

जो हरे हरे रंग के है और यहां दूर तक कोई भी नहीं है।

और यहाँ पे बहुत सारे बाइकस लगे हुए है और स्कूटीयाँ भी लगे हुई है और स्कूटी का रंग काला है ।